सारी कार्स दिखाई दी जा रही है।

यहां पर लड़कियां डांस कर रही हैं।

एक बन्दा कंप्यूटर पर काम कर रहा है।